और पानी की एक बोटल है पर्पल रंग की--

सामने भी हमें एक बॉल जिस पर वर्ल्ड लिखा हुआ है नजर आ रहा है।

और लाल बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर के अंदर हरे-हरे पेड़ हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें तालाब के अंदर भी पानी नीला नीला नजर आ रहा है।

सामान है और दलिया है उसके पास लाल रंग की--

छत पर रेलिंग लगी हुई नजर आ रही है और पीले लाल झंडे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक नाम लिखा हुआ है अलंकार ज्वेलर --

इस तस्वीर के अंदर हमें स्टेज पर सोफा बड़ा--

और हमें दिखाई दे रहे हैं फूल लगे हुए हैं गमलों में --

इस तस्वीर में हमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीले नीले दरवाजे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं गुलाबी मकान है।

बड़ी बड़ी बल्लीया जो लगी रहते हैं।

बहोत सारे मकान हमें बने हुए दिख रहे हैं इस तस्वीर में --

हमें दिखाई दे रही है बेले लगी हुई हैं हरी हरी--

बाहर भी पेड़ लगे हैं जाली लगी हुई है।

तस्वीर में हमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है बीच में--

गोल गोल रिंग है और उनमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

अनार रखे हुए हैं संतरे रखे हुए हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें बहुत सारे पौधे काली पन्नियों में--

दीवार पर सीनरी और लैंप दिखाई दे रहा है हमें जलता हुआ--

और हमें और भी गाड़ी और लोग हमें दिखाई दे रहे हैं दूर--

हमें नजर आ रही हैं महिलाएं हैं और आदमी भी हैं।

रखी हुई दिखाई दे रही हैं छोटी बड़ी--

तस्वीर के अंदर कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही हैं जालियां लगी हुई है।

ऊपर कुर्सियां रखी हुई हैं सफेद--